ये एक पार्क है। पार्क के बीचो-बीच एक बड़ा पेड़ है। पेड़ के नीचे एक छोटा-सा झूला है। झूले में बच्चे आ के बैठते हैं।

देखो बच्चे लोग बहुत मौजूद है इधर पेंटिंग कम्पटीशन चल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे बच्चे यहाँ पे आके --

ये ऊटी के बगल के पार्क के अंदर बसा है। हम लोग जाकर उधर से बहुत सारे फूल लाते हैं। यहाँ पर फूल अच्छे --

ये एक मार्केट है। मार्केट के पास का कॉम्प्लेक्स इसमें सौ दुकानें हैं आज ये दुकानें सब बंद है क्योंकि आज सन्डे है।

यह रोड है। रोड में इतनी सारी बाइक पर जा रही हैं। आज ट्रैफिक जाम है लगता है आज कोई पॉलिटिशियन इस तरफ से आ रहें हैं।

सब खाने के लिए आ गए हैं कुछ लोग ने चपाती इसकी आर्डर किया है कुछ लोगों ने मिल्स भी आर्डर किया है।

ये मछली का दुकान है। मछली बहोत सारी थी अभी थोड़ी सी है। सारे बिक गई है। आज मछली का दाम बोहोत सस्ता है।

खेलने के लिए । अभी थोड़ी देर में मैंच शुरू हो जाएगा। इंडिया का या पाकिस्तान का कौन --

ये ऐरोबिक्स क्लास हो रहा है छे साल से दस अ साल के लड़कियों का और लड़कों का।

दो लोग इधर से जाते थे आज ये रस्ता बहुत सुनसाना है लगता है यहाँ पर सुनामी आने का डर है इसलिए कोई इस तरफ नहीं आ रहा है।

यह हुंडई शोरूम है यहाँ पर बहुत सारे बाइक मिलते हैं आज ऑफर का दिन है दिवाली के ऑफर में भरा डिस --

यह एक पुराना मकान है। बोहोत सालो पहले यहाँ पे कुछ लोग रहते थे। अब यह ये घर एक ऑफिस बन गया है।

हवा आने के कारण बोहोत फ्रेश हेयर है। बाहर के पॉल्यूशन इस तरफ --

यह एक मिठाई की दुकान है। मिठाई हमें लड्डू मेसऊर पाक और पेड़ा और रसगुल्ला --

ये एक अंधेरा है रात का समय है। बीचो-बिच एक टावर है टावर के सामने अ उ चंद्रमा दिख रहा है। रस --

यह एक चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर के अंदर एक जानवर है उसे जानवर का। --

ये एक माल जैसा है। माल के सामने दो ए.टी.एम. हैं। ए.टी.एम. में लोग पैसा निकालते हैं।

उस बहुत सारी दुकानें भी है।

एक साहब भी खड़े हैं। साहब लाल रंग का शर्ट पहने हैं और सामने दो पुलिस लोग भी खड़े हैं।

ये एक लाइब्रेरी हॉल है। हॉल मे हर बच्चों को बैठने के लिए चेयर है और टेबल है अलग-अलग पार्टीशन है।

होटल को बुक करने के लिए वो इधर बैठ के वेट करते हैं और रिसेप्शन लिस्ट में नाम दर्शा करते हैं।

और लड़के लोग भी बैठे हैं। एक लड़की इस तरफ से चल रही है। बड़ा अच्छा --

ये मानसरोवर स्टेशनरी का दुकान है। सामने ब्लू कलर का शटर है। अंदर बोहोत सारी स्टेशनरी --

इशकुल का रंगोली कंपटीशन है। बोहोत सारी लड़कियां रंग क्-का डिसाइन डाल रही हैं। कुछ लड़कियां लाल रंग --

ये एक चर्च है। चर्च के सामने फॉदर होते हैं और फॉदर सभी लोगों को --